ये छत है छत के ऊपर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं उसके ऊपर रस्सी बंधी उसपे सारे बहुत ही कपड़े सुखाए जा रहे हैं।

यह गैस एजेंसी है इण्डेन मेमर्स वरदान इण्डेन वितरण वात --

बहुत ही बड़ी नदी है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

जेन्टस व महिलाएं बच्चे कपड़े खरीद रहे हैं।

इस पे शुभ रेड कलर का मेडिकल स्टोर ब्लू कलर का लिखा हुआ है।

यह एक ढाबे के पास का सीन है जिसमे रात में काफी लोग गाड़िया खड़ी करके खाना वगैरह खाते--

यहां पर रात को बहुत सी गाड़ी मिस होते हैं।

उसके पास एक लाइट भी लगी हुई है एक बीच में गाड़ी भी खड़ी हुई है।

ट्रक के पास दो जेंट्स खड़े हुए है पास में एक झोपड़ी भी पड़ी हुई है।

यह एक मंदिर है और इसके ऊपर तीन मूर्तियां रखी हुई है बीच में एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में बहुत ही सुंदर मंदिर है।

मंदिर के ऊपर साइड में बजरंगबली जी की पास में माताजी का और उसके पास में काली मईया की मूर्ति है।

इसके बाहर एक जेंट्स भी खड़ा हुआ है शीशे का गेट भी लगा हुआ है।

पेड़ भी खड़े हुए हैं बहोत ही अच्छा लग रहा है जिसपे कुछ पिक्चर्स भी लगी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें रेस्टोरेंट में बहुत लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए आते हैं और यहां से पिज़्ज़ा डिलीवरी भी होता है।

यह एक पहाड़ है और उसके ऊपर पांच छः पत्थर रखे हुए हैं।

नीचे ग्रीन कलर की पट्टी ऊंची हुई है।

गेट के सामने एक पार्क बना हुआ है जिसमें कुछ पेड़ है।